यह एक हेयर सैलून है जहां बहोत सारे मिलर लगे हुए है और सामने एक व्यक्ति कुर्सी के बगल में खड़ा हुआ है।

सामने एक रिसेप्शन है जहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जैसे शैंपू स्प्रे ।

यह एक कपड़े का शोरूम है जहां बहोत सारी लेडिस कपड़े टगे हुए हैं।